यहाँ पे साइड पे नाव लगी हुए है लकड़ी की नाव लगी हुई है।

बड़ा वृक्ष भी लगा हुआ है एकदम बहुत सुंदर है लाइटिंग वगैरा भी दिख रहा है।

पेंट है जो दिए यहाँ पे कमरे में जो कलर पूता है जो व्हाइट कलर पूता हुआ एकदम शांति लग रहा है देखिए टाइल्स है।

सामने के तरफ पेड़-पौधे लगे हुए है सामने बना हुआ है जिसमें गमले रखे हुए सर्किल --

यह हमे शहर की फोटो दिखाई दे रही है कुछ बहोत ही बड़ा-सा शहर दिख रहा एकदम साफ-सुथरा।

एकदम चारो तरफ से गेट जैसा रूम दिया गया है और बीच में समाधी है।

सामने गार्डन के लिए जगह भी दी गई फ्लावरस लगे हुए है यहाँ --

यहाँ हमें शहर की रोड दिखाई दे रही है यहाँ बाइक चल रही है ऑटो चल रहा है।